यहां में दुकान लोग हैं जिसमे मिडल वाला दुकान में चेयर और टेबल लोग रखा हुआ है।

और स्टार शेप का लाइट लोग भी टंगा के है।

और स्कूटी लोग और बाइक लोग भी पार्क करके है।

दीवार में बलून भी लगा के है।

जो कि गोल्डन कलर का है और उसका ऊपर में कप शेप का है कुछ चीज भी रखा हुआ है।

आह दिवाल पे एनेस क्लिनिक होम्योपैथी लिख के है।

और एक बड़ा सा पेड़ का झाड़ी लुक भी दिखाई दे रहा है।

यहां में दुकान है जिसमें चेयर लोग भी रखा हुआ है।

और उसका ऊपर में भी है।

और ऊपर के रूफ पे लाइट लुक भी लगा के है।

पीछे में ब्लैक कलर का सीट है जो कि चलने वाला है।

पीछे में दरवाजा भी बनाया हुआ है।

और एक गाड़ी भी पार्क करके दिखाई दे रहा है।

और ऊपर में ट्यूबलाइट भी लगा के है।

बहुत सारा फुल लगा हुआ है।

ऊपर में फैन भी लगा के है।

मैक्सिमम आदमी लोग एलो वाला हैट पहन के हैं।

और पीछे में दिखाई दे रहा है।

और पीछे में बड़ा बड़ा घास लोग भी उग के है।

जिसका बदन में व्हाइट व्हाइट कलर से डॉट डॉट करके है।

और बड़ा बड़ा पेड़ भी लगा हुआ है।

उसका हाथ में बोतल भी पकड़ा हुआ है।

गवर्नमेंट कॉलेज ड्यूमुख लिख के है।

इसका आगे में आईना भी बनाया हुआ है।

आईना का साइड में मेकअप का सामान लोग भी रखा हुआ है।